एक चेयर लगी हुई है जिसके ऊपर डॉक्टर बैठा हुआ है।

एक घर की छत दिख रही है जोकि खपड़े की है।

दरवाजे पे एक वॉचमैन दिखाई दे रहा है।

सीलिंग पे आर्टिफिशियल पत्तों से सजावट की हुई है।

एक टीचर खड़ा होकर लेसन पढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है।

एडजेस्टेबल फैन लगी हुई है दो थाल में फूल रखे हुए हैं।

एडजस्टेबल फैन लगी हुई है बहोत सारे चेयर लगे हुए हैं।

बहुत सारे कैरेट रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

जिसने एक लुंगी पहनी हुई है।

फाउंटेन बनाया हुआ है जिसमें से पानी निकल रहा है।

इस चित्र में दो टेबल लगे हुए दिख रहे है जिसके ऊपर हरे रंग का कपड़ा बिछा हुआ है।

बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए है।

एक स्टूल दिख रही है तीन मजदूर नजर आ रहे हैं।

चेयर लगी हुई है टेबल लगी हुई--

एक फायर केस रखी हुई है एक कॉलिन की बोतल रखी हुई है।

अंदर दो ए_टी_एम के मशीन दिखाई दे रहे हैं।

उस कंम्प्लेक्स में और भी बहुत से बैनर्स लगे हुए हैं जैस कि अरमोनिया रॉलिक ।

यहां पे छोटे छोटे कपट्टी में गमले में बहुत अलग अलग तरह के पौधे लगाए हुए हैं।

इस चित्र में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

एक गैस फैन लगी हुई है और कुछ खिड़कियां दिखाई दे रही है।

मार्केटप्लेस में बहोत सारी चीजें दिखाई दे रही है जैसे चलती हुई टेंपो कार बस --